यह एक सैलून का दृश्य है इसमें हेयर कटिंग सैलून है। जो न्यू ताज के नाम से है। इसमें एक आदमी है तथा बहुत चेयर लगे हुए हैं।

यहाँ स्कूल में चित्रकारी प्रतियोगिता चल रही है जिसमें बोहोत सारे लड़के लड़कियाँ अपने अपने टेबल पर चित्र बनाते हैं तथा मैंडम जी निरीक्षक कर रही है।

मैडम जी नीले कलर की साड़ी पहने हुए है और सभी लडकियों को देख रही हैं।

यह एक चर्च के बाहर का द्रश्य है इसमें ईसा मसीह की प्रतिमा लगी हुई है तथा पूरी प्रतिमा लाइटिंग से सजी हुई है। यह लगभग क्रिसमस का दृश्य है।

यह एक डांस क्लास का दृश्य है इसमें आवास इसमें लड़कियां डांस करती नजर आए हैं जो की एक पैर जमीन पर रखकर दूसरे पर को वहां से पकड़ कर उठा रही है।